एक रास्ता है रास्ते के बगल मे एक ए_टी_एम है जो की बाहर से काँच लगा है दो आदमी है उसके बाहर खड़े है जो की उसका दरवाजा खोल रहा है।

एक बड़ा सा मेला है मेले में एक मिक्की माउस है एक पेड़ है जो की हरा-भरा है।

एक बड़ा सा मैदान है मैदान मे बहुत सी खुर्सिया है एक स्टेज बना है चारों साइड टेंटे लगी है।

एक बड़ा सा करखाना है कारखाने मे एक वर्कर जो की कुछ लाइटे चेक कर रहा है पीछे ट्रान्स्फ़ोर्मर है।